एक व्हाइट कलर का कारखाना है जिसकी बिल्डिंगे बहोत ऊंचे तक है और पूरा शहर--

दिख रहा है पूरा पेड़ पौधा बड़ा बड़ा दिख रहा है।

म्यूजिक का गिटार रखा हुआ है येलो ऑरेंज कलर में और एक ब्लैक कलर में एक संगीत का --

खाने के बहुत सारे मेन्यू के सामान हैं।

कांच और स्टील का ढक्कन है मेनू रखा हुआ है लाइट जल रही है गलासे रखे हुए है।

एक तालाब बना है उसके किनारे मिट्टी का बॉर्डर है।

बहोत सारा छोटे छोटे पत्थर बने है और रास्ता खाली है और नदी है नदी के किनारे --

लगा हुआ है कार खड़ी है व्हाइट व्हाइट मॉल में--

अ पी_ओ_डी टोयोटा लिखा है न्यू यूज्ड पार्ट एंड सर्विस बॉडी एंड पेंट --

बहुत सारा सोफा टेबल लगा हुआ है ऊपर जुमर लगा है लाइट लगी है छोटे छोटे काच के--

मेकअप का सामान है फेसियल किट है।

बहोत बड़ा बड़ा पेड़ पौधा हैं और कुछ पौधे में कुछ फल वगैरा आए है कुछ में कलियाँ आई हुई हैं।

और अंदर जाने के लिए रास्ता भी है क्लीन किया हुआ ।

पर वे लोहे का ग्रीन बोर्ड है लाइटे लगे हुई है बोहोत सारा मोटा मोटा पाइप है और --